सामने जो दृस्य है वो किसी उम्म्म्ब-बड़े कॉलेज या किसी भी --

सामने मे ये पिच्चर है उसमे एक आदमी किसी बैंक के आगे में झाडु लगा रहा है उसके हाथ में झाड़ू है सड़क पे लगा रहा है नाकी अपने द्वार पे

छोटे - छोटे लड़के भी हैं और सभी एकदम खेल में मग्न मगन हैं सभी बच्चे काफी खुस नज़र आ रहे हैं वो इधर से उधर - उधर से इधर बदमाशी कर रहे हैं खेल रहे हैं--

इक किराना दिकान- दुकान को दिखाया गया है इसके चारों तरफ आगे सब सब्जी ई और लसन पूरा रखा हुआ है उसमे दो अंदर दो लोग हैं।

यह तस्वीर है यह एक नृत्य या किसी कम्पटीशन का पार्ट लग रहा है इसमें सभी बच्चे को हाथ मैं सर्टिफिकेट दिया गया है सभी बच्चे क़तर में चेयर कुर्सी पे बैठे है।

सामने एक तस्वीर है उसमे कुछ लोग बाइ को किन रहा है उसमे एक कुछ लोग बाइक पे खड़े है ।

बुरखा पहनी काला उसके हा गोदी मे एक बच्चा है गोद मे और वो खड़ी है और वो देख रही है और जो गेट है मैन गेट वो काले कलर का है ।